एक काली खुजाल सेल्फी ले रही है और एक काली खुजाल वहाँ खड़ी हुई है और ए.सी. लगी हुई हैं।

ये एक एस. बी. आई. का बैंक है इस बैंक कि जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है।

ये एक बहुत बड़ा बस स्टैंड दिख रहा है और बहुत लम्बी लाइन दिख रही है एक सामने आदमी मुंह पे --

रूमाल रखे हुए है एक आदमी सामने से चलकर आ रहा है हेलमेट लगाए हुए है उसके पीछे --

ये बर्फ का कलर सफ़ेद दिख रहा है और ये लोग मोटे-मोटे स्वेटर पहने हुए दिख रहे है।

डेरी फार्म है।

यह एक बाजार अंदर से जुलुस जाता हुआ दिख रहा है इसमें एक आदमी ने लाल गमछा पहना हुआ है और दो आदमियों ने--

टाइल्सो का कलर वाइट है लाइटो का कलर वाइट है।